-- और बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर लाल दिखाई दे रहा है सड़क पर कुछ हरा हरा और काले कलर में दिखाई दे रही है उपर आसमान नीला और रंगीन दिखाई दे रहा हे पेड़ पौधे --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

वॉल का कलर सफेद दिखाई दे रहा है ऊपर छत का कलर रंगीन दिखाई दे रहा है नीचे लाइट दिखाई दे रही है कुछ खंम्बे भी दिखाई दे रहे है जिना दिखाई दे रहे है।

एक कपड़ा की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर लिखा हमारे यहाँ सभी प्रकार का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे एक लड़की कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही हैं।

बंगले दिखाई दे रहा है मंदिर के पास मे बहोत सारे बंगले दिखाई दे रहे है मकानों के कलर पीले दिखाई दे--

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर पीला दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रही है नीचे रोड दिखाई दे रहा है रोड --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

कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है आसमान नीला दिखाई दे रहा है नीला पानी भी दिखाई दे रहा हैं।

जंगल दिखाई दे रहा हैं जंगल भी काला दिखाई दे रहा हैं और एक इसमें ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं जिसका कलर लाल दिखाई दे रहा हैं आसमान नीला दिखाई दे रहा हैं।